टेबल है जिसपे एक पानी का बोतल और एक ट्रे और एक कप नजर आ रहा है।

एक आदमी आता हुआ नजर आ रहा है जो वाइट कलर का पैंट पहना है।

एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है।

नीचे ग्रीन घाँस लगी हुई है।

छोटा सा नल भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य में साइकिल का दुकान दिखाई दे रही है।

और साइड में बिल्डिंग भी बनी हुई है।

और एक पोल दिखाई दे रहा है जिसपे बल्ब जलता हुआ नजर आ रहा है।

छोटे छोटे नाव वगैरा भी लकड़ी के बना करके रखे हुए हैं।

उसे पे लाइट भी लगी हुई है।

एक ऑटो दिखाई दे रही है और बहोत सारे भीड़ भी लगे हुए हैं।

टेबलें बिछी हुई है और बहुत ही चेयरें लगी हुई है।

इसकी छत व्हाइट ग्रीन और ऑरेंज बैलून से सजाई गई है।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

हल्का हल्का घास है और वाइट कलर की बाउंड्री कपड़े से बाउंड्री बनी है।

और एक फ्रीज़ भी नजर आ रही है और कुछ--

गुलदस्ता भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

लकड़ी के चेयर भी दिखाई दे रही है।

जहां पर एक बैनर लगा हुआ है और वहां पर कोरियर पैलेस ऑफिस लिखा हुआ है।

और वहां पे ढेर सारा आदमी खड़ा है।

एक आदमी बाइक से जाता हुआ भी नजर आ रहा है।

सामने कुछ कच्चिया सा मैदान है जिसके किनारे पे बहुत ही सारे साइकिल रुकी हुई--